इस स्कूल का नाम बी_डी_डब्ल्यू वर्ल्ड है।

छोटे छोटे टुकड़े से बनाया गया है।

और चार बोरि भी रखें हुये है।

काउंटर के अंदर दो आदमी भी है।

ट्रेनिक के ऊपर एक मॉडर्न बिल्डिंग डिजाइन करके बोर्ड लगा हुआ है।

इस बिल्डिंग के बाहर एक पेड़ है।

यहां पे बहोत सारे पानी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ फाइल और किताबे रखी हुई है।

गैस पे कढ़ाई ही चढ़ा हुआ है।

कंप्यूटर सभी कंप्यूटर के पास एक एक लड़कियां बैठी हुई हैं।

और घासें भी जमीं हुई हैं।

बाहर दरवाजे से लाइट आ रही है।

दुकान में काउंटर पे कार्टून के डब्बे भी रखे हुए हैं।

बैठने के लिए एक कुर्सी भी है।

बहुत सारे फूलों से सजाया गया है।

और कर्कट से घेरा हुआ मकान जैसा भी दिखाई दे रहा है।